और एक गोल्डेन कलर का है काला कलर का है दो गोल्डेन तीन काला कलर का मूर्ति है और बहुत ही अच्छा लग रहा है| लाईट बर रहा है मूर्ति के अंदर|

ये कोई बहुत ही पुराना खंडहर लग रहा है बहुत ही ज्यादा पुराना ये देखिये काला-काला पूरा जंग लग चूका है दिवाल वगैरा में रूम देखिये टूट गया है और उधर बहुत ज्यादा ही रूम खाली है।

और एक आदमी स लेटे हुए हैं और दो तीन आदमी नमाज़ पढ़ रहें हैं ऊपर पंखा वगैरा लगा हुआ है ये एक गुम एक है पिलर में बॉल उल लगा हुआ है और खूबसूरत लग रही --

सीढ़ी बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बड़ा लग रहा है ये हरी भरी गाछी यहां का मौसम कुछ अलग ही है और एक गाड़ी लगी हुयी है जिस का शीशा सिर्फ नजर आ रहा है हमको।

ये भैया से मिलेंगे तो हम ज़रूर पूछेंगे आपका फोटो देखे थे| और ये ए एक टेम्पू लगा हुआ है क्या है? खटिया वगेरा और यहीं पे बैठ के चाय पीते हैं हम लोग।